पेड़ पौधे भी उगे पड़े हैं यहां पे।

यह एक कार के शोरूम का व्यू है।

बैलून से सजाया गया है।

यह एक कॉलेज के अंदर का व्यू है।

पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है यहां पर काफी धूल मिट्टी देखी जा सकती है।

यह एक हाईवे के साइड का व्यू है यहां पर काफी सारी ट्रैफिक है।

पर काफी लोग देखे जा सकते हैं जो की स्लैप डाल रहे हैं छत--

यहां पर इस साइड एक कुआं है जो की काफी पुराना लग रहा है जिस पर काफी टाइल्स लगाई गई है।

यहां पर चारों तरफ कारपेट बिछाए गए हैं और यहां काफी लोग भी देखे जा सकते हैं।

यहां पर काफी सारी लाइन लाइन से बसें खड़ी हुई हैं तथा यहां पर कार भी देखी जा सकती --